ता सुंदर है और अच्छा भी है।

काफी लाटे भी बोल सकते हो।

ये एक कपड़ा का दुकान है।

कम्युनिटी हॉल टाइप्स है जहां बहुत सारे लोग हैं।

ऊपर से ढका हुआ है।

और ये एक अद्भुत दृश्य।

लोग आ के घूम सकते हैं टहल सकते हैं बैठ सकते हैं व्यायाम कर सकते हैं।

एक जिम है एक सुंदर जीम है।

चार पांच डॉल रखा हुआ है खिलौना रखा हुआ है।

औरत और एकवो लड़के के बीच में रोड क्रॉस हो रहा है।

और ये एक नजारा अदभुत है।

यहां एक टेबल नंबर वन दिख रहा है।

ये एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

ये सेंट्रल गेस्ट हाउस है जहां पे आम आदमी आम जनता या कोई भी हो जिसको ठहरने की व्यवस्था न हो वो रह सकता है।

को यूज कर सकते हैं।

ये एक सुंदर सा जगह है जहां पहाड़ है।

इसपे पानी की छाप छूट रही है।